यहां देख सकते हैं की रोड नजर आ रहा है रोड पे सफेद रंग की पटिया सी पेंट की गई है और हम देख पा रहै हैं यहां पर बैरिकेड लगा रखे हैं ब्लू कलर के और उन ब्लू बैरिकेड पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है।

और पीछे की तरफ हम देख पा रहे हैं की एक बड़ा सा टाइल का कुछ साइन सा बना रखा है और वहाँ पे हमें एक एयरोप्लेन नज़र आ रहा है जोकि फाइटर प्लेन हमे देखने को मिलता है।

जमीन हमे देखने को मिल रही है वह पे पेड़ भी हमे देखने को मिल रहा है पेड़ का तना और उसके हरे-हरे पत्ते भी देखने को मिल रहे हैं हरी --

सकते है कि यहां पे हमें अ- एक ब्राउन कलर की इमारत दिखने को मिल रही है जो कि काफी लंबी चौड़ी सी है।

हम देख सकते है हमें एक दीवार नजर आ रही जिसमे ईटों के डिज़ाइन बने हुए हैं और हम देख पा रहे हैं यहाँ पर काफी सारी छोटी-छोटी विंडोज़ बनी हुई हैं जिसमे लोहे के जाली सी लागी हुई हैं और जो ईटे डिज़ाइन --

हम देख सकते हैं की हमें एक सीमेंटेड रास्ता देखने को मिल रहा है। जिसमे कुछ पानी की वजह से कुछ धब्बे से बने हुए है दाग धब्बे से और हम देख पा रहे है साइडों में काफी सारे पौधे उगे हुए है जो एक बाउंड्री बनाते हुए जा रहे है आगे की तरफ को और --